जो पीछे बिल्डिंग है उसमे दो तीन पेड़ लगे हुए है| नारियल के पेड़ है और बिल्डिंग का रंग सफ़ेद है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है इस रेस्टोरेट को काफी अच्छा डेकोरेट किया गया है।

ये एक रेस्टोरेंट की तस्वीर है इसके अंदर राउन्ड टेबल लगे हुए है वो राउन्ड टेबल पे सफेद रंग का कपड़ा है।

ये एक मंदिर की तस्वीर है मंदिर का रूम है ये अंदर का इसमे एक मूर्ति रखी हुई है जो काले रंग की है।

साइड में एक जीप भी खड़ी हुई है पीछे एक बिल्डिंग है जिसकी आजो-जो आधी सफ़ेद है और आधी काली है।

ये एक रेस्टोरेन्ट की तस्वीर है इस रेस्टोरेन्ट में आ एक पूरा केबिन है जिसमे लाल रंग की कुर्सियां प्लास्टिक की रखी हुई है।

साइड मे पूरे कपड़े रखे हुए हैं नीचे स्टूल है जो ब्राउन कलर में है इस का फ्लोर ग्रेनाइट का बना हुआ है सफेद और ब्राउन से बनी हुई दीवार--

इसका जो पूरा टेबल का डिजाइन है वो एल शेप में दिया गया है जो ब्लू रंग से है ओर इसमे पूरा मल्टी कलर के पर्स ---

ये एक कपड़ो की दुकान है। इसमें काफी कलर के कपडे हैं साड़ियां हैं। ये पूरी कांच ही कांच का शोरूम बना हुआ है। इसमें बाहर डमी रखी हुई है जो कपडे पहनी हुई है।

अंदर पूरा कांच से बना है। पूरी सिलिंग हुई है। इसमें सीढ़ियां काले रंग की हैं।